नमस्कार polymorphism in java पर spoken tutorial पर आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे:
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं ऊबंटु वर्जन 1204 jdkवर्जन17 और eclipse 431
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको java और eclipse ide का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए
आपको subclassing method overriding और overloading का ज्ञान भी होना चाहिए
यदि नहीं है तो संबंधित java tutorials देखने के लिए हमारी website पर जाएँ
polymorphism कई रूपों को लेने के लिए object की एक क्षमता है
polymorphism के प्रमुख लाभ हैं: reduction of complexity और code reusability
java में यहाँ दो प्रकार के polymorphism हैं: compiletime और runtime polymorphism
compiletime polymorphism को अनिवार्य रूप से method overloading के रूप में जाना जाता है इसे static binding भी कहते हैं
runtime polymorphism को अनिवार्य run से method overriding के run में भी जाना जाता है इसे dynamic binding भी कहते हैं
हम पहले ही runtime polymorphism अर्थात method overriding के बारे में सीख चुके हैं
eclipse ide पर जाते हैं मैंने पिछले tutorial में पहले से ही myproject named project बनाया है
using final keyword tutorial की code files let हैं
employee class parent class है
manager class subclass है
manager class में एक अतिरिक्त variable department शामिल है
manager class मैथड getdetails employee class मैथड getdetails को overrides करता है
हम manager class object द्वारा getdetails मैथड कॉल कर रहे हैं अर्थात manager
विवरण print करने के लिए type करें : system out println details of manager class
program so और रन करें तो हम output में department variable value देख सकते हैं
इसलिए subclass मैथड को runtime पर लागू किया जाता है
मैथड invocation jvm द्वारा निर्धारित किया जाता है compiler द्वारा नहीं
इसलिए इसे runtime polymorphism या method overriding के रूप में जाना जाता है
हमने सीखा कि run time polymorphism we है
अब virtual method invocation के बारे में सीखते हैं
eclipse ide में employee class पर आएँ
variable name के लिए static और final keywords हटाएँ
मैथड setname को uncomment करें
static block हटाएँ file सेव करें
testemployee class पर आएँ value manager setname nikkita dinesh; uncomment करें
हम इस उदाहरण को uncommented करते हैं क्योंकि हमने empolyee class में setname मैथड uncommented किया है
अब employee class के लिए employee object emp1 दर्शाते हैं
type करें: employee emp1 = new employee open and close parenthesis semicolon
अब employee class के लिए setemail और setname के लिए value इनीशिलाइज करें
type करें: emp1 setname jayesh; emp1 setemail pqr @gmail com;
employee विवरण print करने के लिए type करें : system out println details of employee class: emp1 getdetails semicolon
employee class के लिए manager object emp2 दर्शाते हैं
हम इसे करने में सक्षम हैं क्योंकि कोई भी java object जो कि एक से अधिक isa test pass करता है polymorphic है
java में सभी objects polymorphic है क्योंकि कोई भी objects isa test अपने स्वयं के प्रकार और class objects के लिए pass करेगा
a manager isa employee
reference variable के माध्यम से किसी object तक पहुँचने का केवल एक संभावित तरीका है
reference variables जैसे कि emp1 emp2 और manager
यहाँ हम दो manager objects को दर्शाते हैं
emp2 object का उपयोग करके setemail setname और setdepartment के लिए values को इनीशिलाइज करते हैं
type करें
हम देखते हैं कि यहाँ एक error है the method setdepartment string is undefined for the type employee
यह इसलिए क्योकि setdepartment मैथड employee class के लिए मौजूद नहीं है
अत: line emp2 setdepartment it; हटा दें
विवरण print करने के लिए type करें: system out println details of manager class: emp2 getdetails semicolon
program सेव और run करें
यहाँ output में हमें manager of: रिक्त मिलता है
यह इसलिए क्योंकि हमने emp2 का उपयोग करके manager class में department इनीशिलाइज नहीं किया है
demo उद्देश्य के लिए default department it है
अत: manager class में जाएँ और department के लिए value इनीशिलाइज करें
program सेव औऱ रन करें
हमें output प्राप्त होता है: employee object referring employee class
manager object employee class को संदर्भित कर रहा है और manager object manager class को संदर्भित कर रहा है
यहाँ हम देखते हैं कि manager class का getdetails मैथड emp2 द्वारा कॉल होता है
लेकिन जब emp2 setdepartment को कॉल करने की कोशिश करता है तो हमें एक error प्राप्त होती है
इसका कारण निम्नानुसार है:
अत: यह कोई error नहीं डालता है और code को मान्य करता है
run time पर हालांकि jvm manager class में getdetails को लागू करता है क्योंकि manager class का getdetails employee class के getdetails को overrides करता है
अत: हमें manager class के getdetails के आधार पर output प्राप्त होता है लेकिन compiler employee class में setdepartment मैथड को नहीं देखता है
इसलिए emp2 कॉल करने पर setdepartment एक error देता है
यहाँ employee मैथड getdetails employee class के लिए लागू करता है
compiler emp1 getdetails के समय getdetails के लिए employee class संदर्भित करता है
रन time पर jvm employee class में getdetails को लागू करता है अत: हमें employee class के getdetails के आधार पर output प्राप्त होता है
इसलिए jvm object के लिए उपयुक्त मैथड calls करता है जिसे प्रत्येक variable में निर्दिष्ट किया जाता है
यह व्यवहार virtual method invocation के रूप में संदर्भित किया जाता है
मैथड्स virtual methods के रूप में संदर्भित है
java में सभी मैथड्स इस तरह का व्यवहार करते हैं
हमने सफलतापूर्वक सीखा है कि virtual method invocation we है
हमने पहले ही compiletime polymorphism अर्थात method overloading के बारे में सीखा है
संक्षेप में जानते हैं कि compile time polymorphism क्या है
compile time polymorphism में class में एक से अधिक मैथड हो सकते हैं
मैथड्स का समान name होता है लेकिन अलगअलग तर्कों के साथ
compiler compilertime पर मैथड कॉल को समझने में सक्षम है यही कारण है कि इसे compile time polymorphism के रूप में जाना जाता है
अत: संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
नियतकार्य के रूप में vehicle और bike class के लिए मैथड्स ओवरराइड करें जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में उपयोग किया था
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे देखें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
spoken tutorial project आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा mission एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा समर्थित है इस mission पर अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है:
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है iit bombay से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद